ये-- जेन्ट्स है यहाँ पर मशीनों पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी मशीने रखी हुई हैं। आस- पास और भी मशीने हैं। शाम का टाइम है लाइटे जल रही है।

ऊपर ये लोहे के रॉड से एक जाला बना कर छत पर रख के छत के ऊपर मालवा डाला जा रहा है मुझे ही --